यहाँ पर एक बस स्टैंड में दो बसे खड़ी हुई है और उसके बाहार कुछ यात्री भी खड़े हुए है।

कंक्रीट का ढेर लगा हुआ है और --

कुछ फूलों के गमले भी लगे हुए हैं।

के दरवाजे के ऊपर कुछ फूल मालाये लटकी हुई हैं और सामने।

ऐसा लग रहा है जैसे की ये किसी एक पुल के पास खड़े हों।

और ये है पहाड़ी इलाका है जहां पर काफी छोटे बड़े पहाड़ पेड़-पौधे हैं।

और उसके बराबर में छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं मंदिर के बहार एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

बगीचे के पीछे एक घर भी बना हुआ है घर के ऊपर सफ़ेद रंग --

यहाँ पर एक सब्जी की दुकान है इस दुकान पर हरी मिर्च मटर --

जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

और लोग आते-जाते दिख रहे हैं।

जिसने नीले रंग की टीशर्ट पहन रखी है।

दुकान में काफी सारी रैक बनी हुई हैं इन रैको में विभिन प्रकार की किताब-कोपियां --

और उससे सम्बंधित सामान रखा हुआ है।

सफ़ेद रंग की कमीज पहन राखी है ये एक रास्ते पर खड़े हैं।